यह एक बिल्डिंग है जो कि बोहोत ही प्यारी है। यह टू फ्लोर तक का है और इसको सजाया गया है लाइट्स से। यह बिल्डिंग का कलर क्रीम और रेड में है।

यह एक होटल है जो कि बोहोत ही बड़ा है और ये तीन फ्लोर का है ऊपर यहां पे लिखा है होटल स्वर्ग।

यह एक बिल्डिंग है जो कि दो फ्लोर की है। सामने दो विंडो भी है और यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है। यह दिखने में बहुत ही प्यारा है।

एक सामने बैनर लगा हुआ है। जिसमें सिटी प्लेस लिखा हुआ है। नीचे दो गाड़ी खड़ी हुई है। एक ग्रे कलर की है। एक रेड कलर की है और यह बिल्डिंग दिखने में बहुत ही प्यारा है।

--और यहा पे साइड में एक बिल्डिंग भी है और यहा खुला मैदान है यहा आसपास छोटे-मोटे पौधे है पेड़-पौधे है और यहा खुला आसमान के नीचे सारी --

यह एक गाँव में कोलेज है जो की गर्ल्स कॉलेज है। और इस कॉलेज के आगे एक बोर्ड लगा हुआ है। उसपे लिखा है राम सेवक सिंह महिला महाविद्यालय।